एक लड़का हैं एक काळे कलर का है और ऑटो के पास एक --

साड़ी पहनी है जैसे लाल पिले हरे नीले --

एक छतरी लगी है नीचे के साइड पे बहोत सारी --

एक है यहाँ पर लकड़ी गड़ी हुई है जिसके आसपास मिटटी है।

बैठा हुआ है और डोर पर लाल कलर का पेपर लगा है।

एक हाथ में धागा बांधा है नीली टी शर्ट पहनी है जो प्रिंटेड है।

फूलों के ग्लास लगे हुए है और अगरबत्ती जल रही है फूलों की --

बाला है एक स्टूल रखा हुआ है एक आदमी घर पे दिख रहा है।

और बहता हुआ पानी सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर स्टेज पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर --

उनके हाथ में ऑरेंज कलर का धुँआ--

तेली पे बहुत लड्डू रखे है जो--